सेव ह अमरूद ह केला अनार ह पपीता ह नारियल ह पाच फल छ फल चढल ह। सब्जी --

सोफा काला सोफा लाल सोफा औरेज कलर का सोफा अ आसमानी कलर का सोफा ह।

वो घर वाला नाव छोटा छोटा एके आदमी मेहरारु कुल बेठल हुअन एहर ओहर।